कुर्सी रखा हुआ है टेबल रखा हुआ है।

बहुत ये मोबाइल चला रही हैं एक कुर्सी हैं एक टेबल हैं और बहुत सारे हैं।

नीलम ओथोमाचिंग लिखा हुआ हैं बहुत सारी बाइक हैं।